बिल्डिंग के बाहर बहोत सारी एक्टिवा बाइक खड़ी हो रखी है।

दुकानो के बाहर दो ट्रेडर्स मशीन रखी है जो फुटपाथ पे है।

जहां पर बहोत सारी मरी हुई मच्छी लाल कारपेट पे रखी हुई दिखाई दे रही--

दुकानों के ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई दिख रही है।

चेयर के नीचे लाल और काले रंग का मैट बिछा हुआ है।

चेयर के पीछे टेबल रखा हुआ है जिस पर सामान रखा हुआ है।

जिसके ऊपर एक पीले रंग का बोर्ड रखा हुआ है।

ऊपर कैमरे के बाहर की तरफ चार पांच ए_सी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

घर के बाहर की तरफ दो लोग साइकल के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसे की झूमर फूलों की माला फ्रेम आदि जैसा समान रखा हुआ दिख रहा है।

टेबल के पीछे की तरफ एक कुर्सी रखी है जिसके ऊपर नीले रंग का टॉवल रखा हुआ है।

अंदर की तरफ दीवार पर बहोत सुंदर सुंदर आकृति बनी हुई दिख रही है।

बिल्डिंग के बाहर की तरफ बहोत सारे सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं।

जिसके ऊपर एक डाल रखी हुई दिखाई दे रही है।

इसके आस पास बहोत सारे घर और दुकाने दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक बहुत पुराना सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है जिसका रंग हल्का पीले में है।

घर के दीवार और दरवाजों पर बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनी हुई है।

पार्किंग की दीवारें सफेद रंग की दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारा रंग बिरंगे पैकेट हैं जिसके नमकीन के पैंपर्स के साबुन के।

तस्वीर में एक दुकान दिखाई गई है जो नीले रंग की है।

पत्थर के आसपास कुछ घासें दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में एक बहोत सुंदर सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी बाहर की तरफ शिशो से डिजाइन बना हुआ है।

जिस पर बहोत सारी औरतें खड़ी होकर पूजा करती हुई दिखाई दे रही है।